यह बहुत बड़ा हॉल है --

और बैठने के भी सुविधा बहुत अच्छी है ।

एक बहुत बड़ा स्कुल है इसमें अनेक प्राकार के कमरे बनाये गए हैं ।

और कुछ में क्लास होती है बच्चों की आजु बाजु से रोड है झाड उगने भी लगे है ।

भी ज़रूरतमंद चीज़ है वो सब कुछ मिल जाता है ।

जहाँ पर एक घर बना हुआ है उसमें खिड़की दरवाजे हैं ।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमरा है यहाँ पर लोग आते है ।

और कोयल है कौवे हैं हाथी है मोर है किस--

या या का विद्युत केंद्र है यहा पर --

यहाँ पर लाइट तैयार की जाती है इसमे से कोइ बिजली भरने का रहा तो वो वो भी बिल यहा पर भर सकते है।

कंप्यूटर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अब सब ऑनलाइन हो रहा है ।

अच्छी सी दवाइयाँ लिखकर देती है और जो --

यह एक सलाख सलाखों का दुकान है बहुत बड़ा दुकान है इस --

और जिसे गेट बनाना है सामने में तो गेट बनते हैं खिड़कियां बना जाती हैं इसकी--

यह एक बहुत बड़ा दवाखाना है जहा--

वो आखो कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से करती है ।

जिसका उद्धातन हो रहा है आजो बाजु से बहुती सुन्दर मंडब डेकोरिशन किया हुआ है ।

और झाड़ों को भी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और --

यह यो यो पर नदी के ऊपर बनाया गया है ।

वह परीक्षा दे करके हि फिर मालूम होता है ।

फूलों के भी झाड हैं अनिक प्रकार के फूलों के लिए और इसमें घूमने-फिरने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं --

और सुबह पार्सल भी करके देते थे यहाँ के दुकानदार जो मालिक हैं वो ।

और सब सामान मिलता है यहाँ पर ।

यहाँ घर बना रहे हैं यहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे हैं ।

उसमे बनारहे है और घर के आगे बगीचा भी बना रहे हैं ।

यह एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है जहाँ से ट्यूबविलर फोरव्हीलर जीप और --